उधर साइड भी बहोत ज्यादा हरियाली दिखाई दे रही।

सामने चार्ज लगे हुए और खिड़कियां दरवाजे लगे हुए--

ग्राउंड के अंदर कोने में कुछ पड़ा है और दरवाजे में टाइल लगी हु--

वे एक फर्नीचर पड़ा है और इधर एक रेड कलर के दो इस्टूल पड़ी है।

पत्थरों की दीवार बनी हुई है बीच में लोहे के दरवाजे लगे हुए हैं दरवाजे के एक गेट खुला है।